ये फोटो किसी स्कूल की है जहा पर ये बच्चे कागज से कुछ खिलौने बना रहे है।

एवं एक टीचर इन्हे देख रही है।

कुछ व्यक्ति खड़े हुये है इस स्टेज के नीचे बहुत सी कुर्सियां लगी है उनपर कुछ व्यक्ति लड़किया पुरुष बैठे हुये है यह स्टेज बहुत सुंदर सजा है।

जिसमें अंदर जाने केलिए एक बड़ा गेट है एवम इस मेले के अंदर एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है इस मेले के बाहर भी बहुत भीड़ है।